बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग काफी बड़ा है। यह बिल्डिंग में अभी काम चल रही है। यह बिल्डिंग में बहुत सारे लोहिये में करके मसाला ऊपर पहोचा दिया जा रहा है।

ऊपर में काम चल रहा है बहोत सारे लेबर मिस्त्री यहां पर है यह घर काफी काफी ऊंचाई में में बन रहा है।

यह चर्च में बहुत सारे आदमी यहाँ पर इसाई धर्म के आदमी यहाँ पर आकर कैंडल जलाकर प्राथना करते हैं शादी विवाह भी होते है ।

फील्ड है यह फील्ड काफी बड़ी है इस फील्ड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं यह खेल कबड्डी के है यहाँ पर बहुत सारे घासे भी लगी हैं यहाँ पर बहुत से आदमी यह कब्बडी के खेल देखने के लिए भी आए हुए हैं ।

यहाँ पर भोजन करने के लिए आए हुए है यह रेस्टोरेंट में बहुत सुन्दर भोजन मिलते है।